पहाड़ के आजू-बाजू छोटे-छोटे पौधे नज़र आ रहे हैं।

ऊपर पीले रंग का टोपा लगा रखा है दोनो आदमियों के हाथ में हथौड़ा दिखाई दे रहा है।

कुछ पत्थर के टुकड़े पड़े हुए दिखाई दे रहे है दीवार दिखाई दे रहा है ।

उसके सामने में एक टेबल रखा हुआ है दिखाई दे रहा है एक टिन का बड़ा सा --

एक जग दिखाई दे रहा है एक गिलास दिखाई दे रहा है एक कटोरी दिखाई दे रही है एक चम्मच दिखाई दे रहा है।

उसके बाजु में एक टेंट लगा हुआ दिख रहा है आजु-बाजु पेड़ लगे हुए दिख रहे है ।

सती मर्ढ़ी लिखा दिखाई दे रहा है उसके बाजू में एक बाइक और एक साइकिल खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

रोड पर काई जमी हुई दिखाई दे रही है।